और ये फैक्ट्री के आगे पूरा मिट्टी बुट्टी पड़ा हुआ है जैसे यहाँ पर खड्डा खोद के रखे हैं तो ये जो लाल और व्हाइट कलर का जो बड़ा सा पोल जैसा बना हुआ है इस फैक्ट्री का जो भी कचरा एयर पलूशन बाहर उसी से जा--

आप यहाँ पैंटालून्स का जो है बोर्ड लगा हुआ है और ये लेफ्ट साइड में देखिए आप एक छोटा सा कार्ट है जैसे--

सोला सोलापूरी तो यह शैलेश जी का है जो भी --

और ये कचरा कीचड़ भी है और क्योंकि यह पानी का भी काफी उपयोग उपयोग --